पीछे में जो है पानी दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में।

ये जो है जू जैसा दिखाई दे रहा है।

जिनमें बहोत सारे सामान दिखाई दे रहा है जिसके फ्लावर पॉट भी दिखाई दे रहा है।

इसमें जो है बस दिखाई दे रहा है तीन ठो।

और दो ठो टेबल दिखाई दे रहा है।

वे रूम जो है वाइट कलर में देखने को मिल रहा है।

आ रूम का अंदर में कुछ लोग दिखाई दे रहा है।

और इसमें जो है एक पर्दा दिखाई दे रहा है वाइट कलर में।

साथ ही साथ लाइट बफ भी जलते हुए दिखाई दे रहा है वाइट कलर में।

इसमें जो है डोंकी दो ठो दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक तो पत्थर दिखाई दे रहा है हां वो भी ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है।

और इसमें सीढी स्टेप भी दिखाई दे रहा है और अंदर एक फैन दिखाई दे रहा है।

ये जो है चर्च का अंदर है और यह चर्च जो है वाइट कलर में दिखाई दे रहा है।

अंदर बहुत सारे आदमी लोग दिखाई दे रहा है।

और एक ठो बाइसकल दिखाई दे रहा है वाइट कलर में।

जो कलर जो है व्हाइट और गोल्डन कलर मिक्स करके दिखाई दे रहा है।

ये टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट दिखाई दे रहा है।

और इसमें जो हैं ब्रिज भी दिखाई दे रहा है इसमें--

नीचे में आदमी लोग दिखाई दे रहा है।

और इसमें जो है स्टेट बस लिख के भी दिखाई दे रहा है।

ये घर जो है थोड़ा ब्लू कलर रेड कलर मिक्स करके दिखाई दे रहा है।

और उसमें जो है गेट दिखाई दे रहा है रेड कलर में।

साथ में इसमें कप भी दिखाई दे रहा है अ टेबल भी दिखाई दे रहा है।

और यह हॉल जो है ब्लू और वाइट कलर में दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग का फेस जो है इसमें ब्लर करके दिखाई दे रहा है।

इसमें एक ठो फैन दिखाई दे रहा है।

और इसमें जो है अह पेड़ भी दिखाई दे रहा है बैंबू भी दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन कलर में है।

और उसमें पानी दिखाई दे रहा है जो कि व्हाइट कलर में है।

इसमें दो ठो चेयर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का फ्लावर पॉट भी दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर वाला।

और घर का अंदर में जो है कुछ लोग दिखाई दे रहा है।

जिनमे लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है जलते हुए।

ये दो टेबल दिखाई दे रहा है और बहोत सारी चेयर दिखाई दे रहा है जो की थोड़ा येलो टाइप में दिखाई दे रहा है।

अन में इसमें ड्रीम हाउस करके लिख के भी दिखाई दे रहा है।

इसमें जो है बहुत बड़ा मशीन दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन कलर में है।

उसमें जो एक जंगल भी दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में।

उसमें अंदर में जो है आदमी लोग दिखाई दे रहा है।

और ये जो है मॉल जो व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है।